तो आप देख सकते हैं यहां पर कही दो बत्तक बत्तक और बत्तकी तैर रही है यहां पर आप देख सकते हैं तालाब है तालाब--

यह थाना का गेट है गेट के ऊपर एक लाइट भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह रात के वक्त जलता है रात के रोशनी फैलाता है चारों दिशाओं में।

आप देख सकते हैं यहां पे ट्रक वगैरह भी खड़ा है यह एच_पी का पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा है पीछे में बिल्डिंग वगैरह आप दे--

बहुत बड़ी सी मछली है सामने में एक आदमी बैठा हुआ है जो मछली बेच रहा है तो लाल कलर की कुर्सी में बैठा है सामने एक बोतल देख रही है।

आप देख सकते हैं ये एक मुर्गी फार्म है मुर्गी फार्म बहुत बड़ा है यह फैक्ट्री है मुर्गी का यहाँ पर --

मुर्गी से अंडा दिलवाया जाता है साइड में बहुत सारी ये अंडे देते हैं मुर्गियां कई सारी यहाँ पर मुर्गियां है जो पिंजरे में है रखी गई है।

ये पी सीमेंट स्टोर करने के लिए जगह बनाया गया है बहुत ही सीमेंट है यहाँ पर --

इसे उठा कर के फिर दुकान में ले जाकर के बेचा जाएगा आप यहाँ पर कम कीमतों में दुकान वगैरह में सीमेंट वगैरह खरी --

और आप अह आकर के बैठ करके आराम से इंतजार--

ने चश्मा लगा कर के बैठा थोड़ा सा स्माइल कर रहा है आप पीछे में देख सकते हैं कई सारे सामान वगैरह रखे गए हैं ये शायद एक बुक स्टोर के जैसा लग रहा है।

देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर छड़ वैगरा लगाया गया है कई प्रकार से घुमा-फिरा के छड़ वैगरा लगाया गया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

यह रोड के सामने वाला लगा हुआ है आप देख सकते हैं नजारा बहुत अच्छा है यहां पर आप फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं सामने की और--

वाटर पार्क अभी अच्छे से बना नहीं है यहां पर पानी वगैरा नहीं है पानी वगैरा भरा जाएगा तो यहां पर कई सारे --

गोल्डन फिश अलग अलग प्रकार के मछली वगैरा पकड़ सकते हैं आप देख सकते हैं सामने की ओर कई सारे--

ये एक घर के अंदर का फोटो यहां पर कई सारे देख सकते हैं गेट वगैरा हैं एक दो तीन चार पांच गेट है आप देख सकते हैं।

यहां पर पूजा वगैरह भी होता है आप यहां पर आकर के पूजा वगैरह भी कर सकते हैं यहां बहुत अच्छा है।

दुकान का फोटो है यहाँ पर आप कई प्रकार के क कई डिज़ाइन के जैसे सामने की ओर लगे हुए हैं।

आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सजाया गया है और अंदर की ओर देख सकते हैं दुकान भी है वहाँ पर एक आदमी खड़ा है एक आदमी बैठ कर के इसको कुछ सामान भी दे सक दे रहा है।

तीन लड़के हैं पीछे की और एक आंटी खड़ी हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आई हैं एक --

यहाँ पर इलाज बहुत अच्छे से होता है आप भी यहाँ पर आकर के इलाज करा सकते है आप देख सकते है बहुत अच्छे से इलाज --

देख सकते हैं यहां पर एक लड़का यहां पर बॉय लिखा हुआ टोपी पहन कर यहां पर डांस कर रहे हैं।